इहाँ इहाँ एक बैग बा बैग से सब लोग पैसा निकालेला यहाँ पे लोग के भीड़ बा पारा पारी सब पैसा निकालेला बैग बहुत महत्वपूर्ण बा |

यहां एगो एटीएम बा। एटीएम में सभी पैसे निकाले ला।

ईगो लड़का बा सब किरान बा आस पास कितना देखे में अच्छा लागता कितना अच्छा टी शर्ट पहिनले बा बहुत अच्छा लागता ओकर बाजू बहुत अच्छा लागता |